जोकि कुछ देख रहा है और रेड कलर की शर्ट ब्लैक कलर का पैंट पहने हुए हैं।

यहाँ पर एक गार्डन बना हुआ है और इस गार्डन में एक घोड़े पर बैठे हुए एक व्यक्ति का स्टोचू स्टेचू बना हुआ है।

सीढ़ियाँ बनी हुई है स्टैचू के एं चारों ओर रेलिंग बनी हुई है और एक बोर्ड लगा हुआ जिस पर एक व्यक्ति की पिक दिख रही है सामने एक खंबा जिस पर --

यहाँ पर एक सेलून है जिसके गेट पर शीशा का गेट लगा हुआ है और सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो ब्लैक --

यहां पर एक बैंक है केनरा बैंक है। इसके बैंक के सामने एक गेट है जिसमें शीशा का गेट दिखाई दे रहा है। सामने दो-तीन बाइक खड़ी हुई है।

और सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो वाइट कलर की शर्ट पहने है पीछे आसमान है।